ये तस्वीर एक ढाबे की है जिसके ऊपर टीन पड़ी हुई है।

यह तस्वीर शादी की है जहां पर दूल्हा दुल्हन के गले में मंगलसूत्र डाल रहा है और कुछ आदमी फोटो खींच रहे हैं।

पास में ही एक व्यक्ती खड़ा है जो बैगनी कलर की टी शर्ट पेहने है।

एक व्यक्ति व्हाईट कलर की शर्ट पहना है और जमीन पर कुछ सामान बिखरा हुआ हैं।

और यहां पर एक काले रंग की टी शर्ट पहना एक व्यक्ति और है।

यहां पर पिंक ग्रीन व्हाइट ब्लैक कलर के बर्तन रखे हुए हैं।

यह एक दो मंजिले का घर है जिसमें कुछ डिजाइने बनी है।

अन्दर कुछ अलमारी है और बाहर एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी है।

पीछे खिड़कियां है जो लोहे के डंडों डंडों से लगी हुई हैं।

यहां बाकी पेड़ भी हैं पेड़ के आगे एक और छोटा सा घर बना दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक ढाबा है जिस ढाबे में--

चेयर और टेबल पड़ी हैं चेयर और टेबल का रंग व्हाइट और ब्लैक है।

सामने ही एक आदमी एक बच्ची का हाथ पकड़ कर लेकर जा रहा है।

उसके आगे एक लाल कलर का बॉक्स रखा है।

इस पे चार खंबे भी दिखाई दे रहे हैं खंभों का रंग सुरमई कलर का है।

यह तस्वीर एक चाय की टपरी की है जिस पर एक बोर्ड लगा है अरक कॉफी स्टाइल --

दो आदमी पाइप नीचे उतार रहे हैं और जमीन पे भी कुछ पाइप रखे हैं।

यह तस्वीर एक पार्क की है जिसके ऊपर लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क वीरधा।

इसके नीचे पीला कलर का पाइप है और नीचे कुछ तार है और एक विंडो भी लगी है।

कुर्सी की रंग लाल और स आदमी की शर्ट का रंग सफेद है।

जिसकी मट्टी के ऊपर पन्नी डली है।

जो खम्बों पर खड़ी है। खम्बों का रंग कत्थई है।